ये एक हरी भरी जगह है और हरियाली दिख रही है वहाँ कोने में एक आदमी खड़ा है स्काई ब्लू कलर का टी-शर्ट पेहन के और पेड़ है और सब हरा-भरा दिख रहा है बीच में एक सर्कल दिख रहा है।

ये एक लाइब्रेरी है वहा पे बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं सामने स्टेअर्स है लड़की की और दो तिन लोग बेठे हुए हैं।

ये जगह पे बहुत सारे फुल है ये कोई मार्केट है और वहा पे फूलों बहुत सारे फुल एक आदमी लेके बेठा हुआ है और कुछ आदमी खड़े हुए है और पीछे भी है जो दुकाने दिख रही है।

अ पिंक और वाइट कलर के और उसके पीछे बड़ी रस्सी दिख रही है और पीछे घर भी है मतलब कोई ईमारत है और वहाँ पे भी फुल और हरियाली ज्यादा दिख रही है।

ये भी किसी मार्केट ही है मार्केट की जगह है थोड़ी सी दिख रही है उसमे थेलियो में कुछ सामान है और फुल भी रखे हुए है येलो और ओरेंज कलर में और पीछे भी दो -तीन गल-ग्राहक खड़े हुए है और सामा-सामने ही सामान भी दिख रहा है।

और उसके पीछे भी अ सेल्फ दिख रहा है और उसमें कुछ चीजे नजर आ रही--

ये एक पेट्रोल पंप का इमेज है वहा पे एक वाइट कलर की कार दिख रही है उसके पीछे भी एक डार्क ग्रे कलर की कार है और उसके ऊपर एक बड़ा सा गोल बना हुआ उसके ऊपर एच पी लिखा हुआ है पेट्रोल डीज़ल सी ऐन जी पवल और डेबिट कार्ड लिखा हुआ है।

इस इमेज में दो कारीगर है जो सीलिंग पे कुछ बना रहे है उन्होनेन ओरेंज कलर का उपर का पेहना हुआ है और हेलमेट ओरेंज कलर का लगाया हुआ है और एक का पैंट भूरे कलर का है और दुसरे का अ लाइट ब्लैक कलर --

ये किसी बिच की पिक है इसमें सामने समुंदर दिख रहा है और ईंट से बनी हुई जगह है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है और सूरज डूब रहा है और पेड़ भी दिख रहा है।

इस इमेज में टेनिस खेलने की जगह दिख रही है उसके सामने एक पोल है और एक छज्जा दिख रहा है और इधर से एक पेड़ दिख रहा है और सामने से सीमेंट से बना हुआ अ बनी हुई जमीन दिख रही --

नीचे से बैंगनी ऊपर से लाल फिर बीच में सफ़ेद और उसके ऊपर भी लाल--

जो अपनी अः जो कुछ एक्टिविटी कर रहे है--

इस इमेज में भारतीय डाक दिख रहा है एक तरफ भारतीय डाक हिंदी में लिखा हुआ और एक तरफ इंडिया पोस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है और रेड कलर की इमारत है और बीच में स्लाडिंग दिख रही है और सामने एक फोर विलर खड़ी है और एक आदमी वाइट कलर का ड्रेस पेहन के जा रहा है।

ये उर्बन पार्क का इमेज है और बोहोत सारे पेड़ दिख रहे है सामने से रोड भी दिख रहा है और आसमान भी दिख रहा है।

इस इमेज में एक लड़का सामने खड़ा है उसने म ब्लू लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है उसके पास भी एक लड़का है उसने बनयान पहनी हुई है चेक्स में--

इस इमेज में एक स्कूटी खड़ी हुई और सामने से एक आदमी आ रहा है और एक बड़ा सा गेट बना हुआ है उसपे जे एम बी और सी एच डी लिखा हुआ है और उसके नीचे पोट्स रखे बहोत सारे उसमे पोधे लगे हुए--

इस इमेज में तीन टेबल दिख रहे है उसके साथ चेयर भी लगी हुई है और दो कुशन रखे हुए है और सामने दीवार पे अ दो मिरर है एक स्केवेयर शेप में और एक अ राउंड शेप में और पीछे लाइट उसकी दिख रही है और उस पर भी क ऊपर भी अ कुम-म है और लाइटिंग दिख रही है।

और पीछे पार्क की जगह भी दिख रही है।

और उसके पीछे ही विलचेयर पे एक बच्चा है जिसने रेड कलर की--

इसमें सामने रोड दिख रहा है और दो आदमी चलते हुए जा रहे है सामने फोर विलर खड़ी है और टू विलर भी और सम तरफ बैनर लगा हुआ जिसपे दिख रहा है और उसके सामने पेड़ है और लाइट का पोल दिख रहा है।

इस इमेज में ग्रीन कलर का लोहे का गेट दिख रहा है जिसपे एक बच्चा गेट खोल के अन्दर जाते हुए दिख रहा है और लड़की का उसके सामने लकड़ी का बड़ा सा गेट बना हुआ है।

यहा पे बीच में बोहोत सारे फुल दिख रहे है और किनारे से बहोत सारी औरते जिन्होंने सर्कल बना के--

वो खड़ी हुई है और बहोत सारे आदमी लोग पीछे है।

इसमें सामने घास का बड़ा सा मैदान दिख रहा है और उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।